इस पिक्चर पर आपको एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके सबसे आगे पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर दो गाड़ी दिखाई दे रही है और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग्स का कलर सफेद रंग का है और एक चेयर भी दिख रही है।

छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है घर जाने के लिए।

ज्यादातर सामान ग्रीन और रेड कलर का है।

स्टैचू के पीछे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बाइक रखी गई है।

इसके आगे काफी सारी चेयर्स एंड टेबलस हैं।

और यहा फोर साइज पेपर जे_के कूपर कम दिख रहा है।

कुछ लोग ग्रीन कलर के कारपेट के खड़े हैं और कुछ चेयर्स दिख रहे हैं जिनका कलर व्हाइट है।

दीवार का कलर लाइट ब्ल्यू है दो कार दिख रहे है।

व एक गेट दिख रहा है जिसका कलर गोल्डन और ब्राउनिश है।

और एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

स्टेयर्स भी दिख रहे हैं और उसके सामने पानी का फाउंटेन दिख रहा है।

दीवार पर तीन फोटो लटके हुए हैं।

इंसान दिख रहा है वो इंसान स्त्री कपड़े में स्त्री मार रहा है।

मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है बगल पर दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

लड़कियों की पैर और सैंडल्स की तस्वीरे लगे हुई है।